रेड ग्रीन कलर के मैट बिछाए गए हैं यहां पे बहोत सारे लोग--

स्कूल बिल्डिंग दिख रही है आजू बाजू बड़े बड़े बिल्डिंगा है लेडीज जेन्स सभी है यहाँ पे--

एल_ई_डी लाइटस चालू है बाजू में बड़ी सी टी_वी दिख रही है।

यहां पे दिया है और यहां पे छोटे से पॉट्स में झाड़ा लगाए गए हैं यहां पे बड़े-बड़े फोना भी दिख रहे --

बड़े बड़े यहां पे झाड़ा भी दिख रहे है लाइट के खंभे है।

ये एक बड़ी सी नदी है जोकि ऊपर पहाड़ पे से बहती हुई--

बैठने के लिए टेबल्स है लैपटॉफ चार्जर है।

कनेक्टिंग वायर्स भी हैं यहां पे बाजू अलमारी पे शेल्फ बनाए गए हैं यहां पे बहुत सारा --

एक व्हाइट कलर की कार पड़े हैं बाजू में जाली भी मारी हुई है बहुत सारे पौधे--

चेयर्स रखे हुए है यहां पे ऑर्डर करने की बुक रखी हुई हैं ग्लासेस हैं।

यहां पे बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं और ये दो नम्बर गेट है।

यहां पे बड़ा सा एक जनरेटर भी दिख रहा है यहां पे--

ये एक होटल है और यह बिरयानी दिख रही है। यहां पे स्टील की टेबल --

ये एक फूलों की दुकान है और यहां पे--

बड़े से हार को लटकाया गया है उसमें।

लोग आए हुए है यहां पे में भी रखे हुए--

ये एक होटल है यहां पे ऊपर पी_ओ_पी किया गया बहोत सारे एल_इ_डी लाइट चालू है ब्लू कलर के--

टेबल सामने चेयर्स भी रखे गए यहां पे नीचे--

ये एक शॉप है बुक स्टाल यहां पे खड़ी है फेविकोल का डबया--

न्यूजपेपर भी आते यहां पे आजू बाजू बहोत सारी दुकाने गाड़ियां ऑटो खड़े हुए--

चेयर्स रखे गए है बहोत सारी लाइटिंग है यहां पे --

ये एक बड़ी सी कंपनी को यहां पे बनाया जा रहा है बाहेर गाड़ी है बहोत सारी लकड़ियां मारे गए ऊपर चढ़ के काम करने के लिए--

पथरे रखे हुए ब्लैक है मट्ठी पड़ी हुई है कंक्रीट है रेती सिमी --

अभी यहां पे बाजू भी घर बंधा हुआ है बाजू में--